यह एक शोरूम का चित्र है जिसका नाम हुंडई लिखा हुआ है।

एक खटिया के ऊपर मच्छरदानी भी रखा हुआ है।

ऊपर में कुछ कपड़े टंगे हुए हैं।

बैलून में रिबन भी बंधा हुआ है।

यहां पर बहुत सारे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां सामने में कुछ चेयर लगी हुई है।

एक बेड के ऊपर एक बैग भी रखा हुआ है।

यहां सामने में दो पिलर भी दिखाई दे रहे है।

यह एक लाइब्रेरी का चित्र है।

नीचे में कुछ गमले में पौधे लगाए गए हैं।

यहां सामने में एक लेडिस दिखाई दे रही है जो माइक में कुछ भाषण दे रही है।

यहां सामने में एक टेबल और दो कुर्सी दिखाई दे रही है।

सामने में एक रास्ता गया हुआ है।

यहां सामने में बहुत सारे बेंच लगे हुए हैं।

इसके चारों तरफ बहुत बड़े घने घने पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यहां सामने में एक पार्लर दिखाई दे रहा है जिसका नाम विशेखा डार्ली डायरी पार्लर लिखा हुआ है।

यहां जिम करने के लिए बहुत सारे लोहे के सामान है।

ऊपर में एक तेल का डब्बा भी दिखाई दे रहा है जिसका प्राइज एक सौ बासठ रुपया है।

दोनों तरफ दो झंडी दिखाई दे रहे हैं।

यहां सामने में तीन स्टैचू भी बने हुए हैं तीनों को सूट बनाए गए हैं।

यहां सामने में दो सरकने वाला बनाया गया है।

ऊपर में और अलग अलग फूल सजाए गए हैं।

जो रिबन भी लगाए गए हैं।

नीचे गमले में बहुत सारे छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे है।

यह एक दुकान का चित्र है।

और बाहर में बहुत सारे आइसक्रीम के पोस्टर बने हुए हैं।

बिल्डिंग के बगल में एक पेट्रोल पंप भी दिखाई दे रहा है जो सफेद कलर का है।

यह सामने में बहुत सारी बिकने दिखाई दे रही है।